यहा पर छोटे छोटे गमले नजर आ रहे है खुर्सी नजर आ रहा है जाली नजर आ रहा है अंदर मे--

यह पर कुछ नजर आ रहे है लोग के सारे मे बॅग लटका हुआ नज़र आ रहा है और बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे है बडासा बिल्डिंग नज़र आ रहा है दिनका समय है धूप बड़ी है।

आसपास बहुत सारी नदिया दिखाई दे रहा है आसमान मे बहुत सारे काले बादल दिखाई दे रहे है। दूर-दूर बहुत सारे पेड नजर आ रहे है कुछ मकान दिखाई दे रहे है कुछ झड़िया दिखाई दे रही है।

यहा दूर में बहोत सारे पेड नजर आ रहे है बिजली के खंबे दिखाई दे रहे है दिन का समय है धुप पड़ी है लोहे की रेलिंग दिखाई दे रही है बड़ा नदी दिखाई दे रहा है नारियल का पेड़ प्लास्टिक का पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कलर के रंगोली नज़र आ रहे है दिए नज़र आ रहे है। कैरट नज़र आ रहे यहा पर बहुत बड़े बड़े दिए नज़र आ रहे छत्री नज़र आ रहे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे है।

है यहा पर बॅनर नज़र आ रहा है बिजली की खंबे दिखाई दे रहे है।